यह सामने एक ऑटो खड़ा हुआ है और जो उसमें एक माला चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। साइड में एक ऑटो दिख रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है।

ये दिन का समय है। आसमान नीला दिखाई दे रहा है। धुप निकली हुयी है।

आ साइड में कुछ हरी खेती में हरी फसल दिखाई दे रही है और ये दिन का समय है। आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और सा --

और ये दिन का समय है| अ धूप निकली हुई दिखाई दे रही है।

और आसमान में कुछ बादल दिख रहे है। ये दिन का समय है। आसमान दिखाई दे रहा है धूप निकली हुई है।

और ऊपर मे एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीला दिखाई दे रहा है और सफेद अक्षरों से कुछ लिखा है और यह दिन का समय है। धूप निकली हुई है।

और सीलिंग मे ऊपर ट्यूबलाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और और कुछ मशीने खुलके रखी हुई है।

काउंटर मे कुछ बर्निए रखी दिख रही है और ये दिन का समय है धूप निकली हुई है।